इस इमेज मे यह दिखाया गया है की एक रोड है के बगल में दो बाइक लगे हुए हैं।

इमेज में यह दिखाई दे रहा है कि यह अपना पुस्तकालय वर्मा बुक सेंटर है।

इस इमेज को देखने से यह पता चलता है की यह किसी पार्क का है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

इस इमेज को देखने से ये पता चलता है की एक घर के आगे बहुत सारे लकड़ियां है और एक टेलर भी लगी हुई है।

एक गेट भी दिखाई दे रही है और रेलिंग भी दिखाई दे रही है| एक व्यक्ति भी बैठे हुए हैं कुछ कुर्सियां भी रखे हुए हैं और ग्राउन्ड में मिट्टी भी दिखाई दे रही है।